एवं अशोक के पौधे भी लगे हुए --

एक तरफ कुछ ऑयल के बॉक्सेज रखे हुए हैं।

केले के छह फूलों को लेकर जा रहा है यह नदी के ऊपर बने एक ब्रिज पर।

जिनका बोर्ड लगा हुआ है और यह एक तीन मंजिला ईमारत है जिस पर नीले रंग के शीशे लगे हुए --

अंतर्गत श्री खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट जनता कॉलोनी जयपुर लिखा हुआ है।

चेक शर्ट पहन के बैठा हुआ है उसके सामने एक सफेद शर्ट वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

येसु मसा येसु मर्सीये का चर्च की तस्वीर है यहां लोग बाहर --